यह एक मन्दिर है जो की बहुत खूबसूरत मंदिर है यहाँ बुद्ध भगवान है इसमें।

जैसे की देख सकते है आप।